इस इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ --

और कुछ छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहें हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

यहाँ कुछ घर दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है इसमें बहोत सारी खिड़किया दिखाई --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

इस इमेज में मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है सीमेंट कलर का है और वाईट कलर का है।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

इस में मुझे एक बडा सा घर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और वाईट कलर का है।

और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के हैं और हल्के येलो कल--

इमेज मुझे एक बड़ा सा नदी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और ग्रे कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक रूम दिखाई देरा है जो क्रीम कलर का है और ग्रीन कलर का है ब्लैक कलर है ब्लू कलर है और येलो कलर है।

इस इमेज में मुझे रूम दिखाई दे रहा है जो वाईट कलर का है जिसमे बहोत सारे--

और कुछ लाइटें दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है और और कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है और एक ए_सी दिखाई दे रहा है।

ये और व्हाइट कलर की है और ब्ल्यू कलर की दिखाई दे रही है।

जिसमें बहोत सारी खिड़की दिखाई दे रही है जिसमें कांच लगा हुआ है और एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और येलो कलर का है।

और कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।